लोहे की बहुत सारी मशीने यहा रखी हुई है कुछ टायर भी रखे हुए है नीले कलर की बहुत सी टीन भी यहां पर रखी है।

यहां एक कार हैकार सफेद कलर की हैयह कार बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश है।

यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर हैं मंदिर लाल रंग से पुता हुआ है मंदिर की बहुत ही ऊँची--

जहाँ एक मंदिर है मंदिर सफेद और नीले रंग से पुता हुआ है मंदिर की एक साईड छपर भी रखा हुआ है नीचे लोहे का गेट है जहाँ पर ओरेंज कलर के कुछ कपड़े --